और हमें दो रास्ते कटते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

एक औरत ने आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर--

और हमें यहां पर लगे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है जिसे मुझे सामने की ओर एक जाल से बना हुआ गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक चित्र है जिसे जिसमें हमें मुझे सामने की ओर तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक चित्र है जिसमें हमे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे कुछ आदमी और एक औरत दिखाई दे रही हैं।

यह एक चित्र है जिस पर मुझे कुछ सामने मशीन दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे सामने की ओर बहुत से फोटो लगाई दिखाई दे रहे हैं।

सामने दो टावर लोहे के खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर सोफे पे बैठा एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

और कुछ प्लेटें भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे सामने की ओर एक मैदान दिखाई दे रहा है।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

सामने बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

और मैदान में कुछ ईंट पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक चित्र है जिसमें मुझे दो आदमी और एक औरत दिखाई दे रही है।

जिसमें उसने आसमानी कलर की शर्ट पहन रखी है।

और यहां पे हमें एक लाल कलर की इमारत भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी ने लाल कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

इसमें हमें कुछ आदमी नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक औरत ने पीले कलर की साड़ी पहन रखी है।

यह एक चित्र है जिसमें मुझे एक बेड दिखाई दे रहा है।

गया है एक चित्र है जिसमें हमें सामने की और कुछ आदमी कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं।

औरत ने ब्लैक कलर का बूरखा पहन रखा है।